वहाँ का गेराज की पिक है जहाँ पे आप एक कार को देख रहे होंगे। कैसी ये टूट गयी है। इसके पईया वईया सही किये जा रहे है और जो इर्द उर्द पड़ी हुई है वो भी टूट --

औरते हैं आदमी भी हैं तो यहाँ स्टेज बना हुआ है जहां पे माता जी की मूर्ति रखी जाती है और लोग सब दर्शन --

चाहे वो पानीपुरी हो बताशे हो जलजीरा हो बर्तन की शॉप हो सब आपको नज़र आ रही होगी।

जितनी नज़र आ रही हैं उतनी मैंने आपको बता दी हैं तो कार्यालय जब आप आते हैं ना तो जो यहाँ के कर्मचारी होते हैं वो तो पहले से आ जाते हैं बेचारे इतने सर दर्द होता है उनका की कोई हद नहीं।

ये एक सदन की तस्वीर है। बोर्ड ऊपर लगा होगा। सदन को लाइटिंग से सजाया गया है।

पेड़ लगा हुआ है तो नगर पालिका में पूरे जो नगर होता है जो पूरा बदायू एरिया की ये तस्वीर है तो वो जो पूरे बदायू का जो डाटा होता है वो यहीं --

ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। इस तस्वीर में एक भवन सा बना हुआ है और पेड़ वेड़ लगे हुए है तो लोग यहाँ पर आते। सरकारी कार्यालय --